दिख रहे हैं लोग जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कल विभिन्न प्रकार की कारें पार्किंग की गई है इस अपार्टमेंट का नाम पार्कवुड है।

का दृश्य हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल--

क से दिखाया गया है जिसमें एक सर टीचर --

इस चित्र में एक गराज का तस्वीर दिखाया गया--

इस चित्र में एक गराज बाइक शॉप वर्क शॉप के बारे में बताया गया है जिसका --

एक हिरणों का झुंड दिखाया गया है जो हरे भरे पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं।

इसमें विभिन्न प्रकार के कारीगर दिखाए गए हैं।

यहां पर विभिन्न प्रकार के लोग खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।